उतै एक रेलिंग लगी जीना बनो और जहें तहें शीशा लगो गओ है। जहें तहें चैनल हैं। जा के बैरार एक ए.सी. और लगी है।

उतै खजुरिया को पेड़ो है। उतै एक दीवाल है। उतै एक तू बैल बनो। कछु हेगो जिसपे कछु लिखो गयो है।

सात आठ लोग हैं। तसलन में गिट्टी भरतै । कछु लोग लै जात हैं। कछु मशीन में डालत हैं। उतै एक मैला है। निकल कै जात हैं। एक खप --

यहाँ में छोटे-छोटे पेड़े हैं जो कटे भए हैं। एक है और एक बढ़ैया सो पेड़ दोनों तरफ खड़ो है।

ऊपर उतै लगी हैं पर्दा लगी हैं। एक और इतै नीली पर्दा लगी हैं। कछु लोग उतै पंडाल में खड़े हैं। कछु बैरार खड़े हैं। कछु भा --